उस पेट्रोल पंप पर बहोत सारी ट्रक्स खड़ी है।

और उस बस स्टैंड पर बहोत सारी सीट्स खाली हैं कुछ यात्री उन सीटों पर सो रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उस दुकान में--

मुझे इस चित्र में एक ग्राउंड नजर आ रहा है उस ग्राउंड के पास में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन --

कुछ ईंटें रखी हुई है कुछ रेत रखी--

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उस दुकान में--

मुझे इस चित्र में एक सुंदर--

एक रनिंग ग्राउंड नजर आ रहा है जिस ग्राउंड पर--

मुझे इस चित्र में एक मार्केट नजर आ रहा है उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं।

चित्र में एक सड़क नजर आ रही है उस सड़क पर--

उस फोर लेन पर एक टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा हैं पर उस टोल प्लाज़े पर --